एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसपे वाइट एंड ब्लैक कलर पुता हुआ दिखाई दे रहा है।

स्त्रियाँ दिखाई दे रही हैं बहुत सारी लेडीज दिखाई दे रही हैं।

मारुती सुजुकी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

गाड़ियां दिखाई दे रही हैं हेलमेट दिखाई दे रहा है।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसपे पिस्ता एंड गोल्डन कलर पुता हुआ दिखाई दे रहा है।

पेड़-पौधों की डालीयाँ दिखाई दे रही हैं पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं टावर दिखाई दे रहा है।

रेत दिखाई दे रहा है सड़क दिखाई दे रही है टायर दिखाई दे रहा है गाड़ियाँ दिखाई दे रही है ।

बाउंड्री दिखाई दे रही है जिसमे पिंक एंड येलो कलर पुता हुआ दिखाई दे रहा है ।

कंकड़ पत्थर दिखाई दे रहे हैं सीढ़ी दिखाई दे रही है एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमे वाइट --